इसमें बच्चों का बड़ों का सब तरह के कपड़े हैं ज्यादा लड़कियों के कपड़े दिख रहा है।

चलन चल-फिर रहें हैं। साइड में कुछ दुकाने हैं। एक बाइक चल रहे हैं। एक रिक्शा खड़े हैं।

फोटो में हमे दिख रहा हैं। एक आदमी खड़ा हुआ हैं। वो ब्लैक कलर की टी-शर्ट है। वाइट कलर का पैंट पहने हुए हैं।

मॉल के अंदर बहुत सारे रेक है रैक में बहुत सारे --

फोटो में एक दिख रहा है एक लड़का सलून के अंदर अपने बाल कटा के आइने की तरफ देख रहा है।